सामने सफेद रंग का दीवाल हैऊपर नील नील पेंट किया गया है ऊपर के साइड पर एक लाइट लगा हुआ हैजो सफेद रंग की सफेद और नीले रंग का आसमान।

सामने एक बड़ा सा पेड़ है जो हरे रंग की पत्ती है बगल में एक गाना जो सफेद रंग का बीच में डिवाइडर बनाया गया है जो का बना हुआ है।

बाहार पर्दे गड़े हुए हैं जो काले रंग की है अगल बगल पेड़ पौधे जो हरी भरी पत्तिया--

एक बड़ा सा घर है जो हरे रंग और सफ़ेद रंग के अंदर साइट है एक बिल्डिंग में बनी हुई है जो सफेद रंग के जाली लगी हुई है बगल में पेड़ पौधे हैं जो हरे भरे पत्तियां--

एक रोड से एक गाडी आ रही हे जो काले रंग की हे।

कार खड़ी हे जो काले रांग की हे बगल मे एक डिब्बा हे जो ब्लू रंग का हे दीवाल का रंग साफेद और काले उपार के साईड पे टिन लागाये गये हे जो सफेद रंग की हे।

सामने पेट्रोल पाम्प हे जो दो पाम्प लगी हुई हे चार नोजेल रखी गई हे एक सामने ट्राक हे जो स्--सफेद कत्थे रंगके बरासा--

उसके सामने एक कूड़ेदान लग जा रहा है द्वारा रखी है बगल में बिल्डिंग के बहुत सारे लाइट लगे--

सामने एक जिम है छोटा सा जो सामने एक लड़का खड़ा हुआ है कच्चे और काले रंग का शर्ट पहने हुए सामने एक लड़का जो चेक क्लर्क काले रंग का शर्ट पहने हुए डंबल रखे गई है लाल रंग की।

सामने एक लाइट लगी है जो सफेद रंग की जल रही है की रॉड हुआ जो लोहे का है सामने--